जहाँ पर एक बड़ा-सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है नीचे के तरफ में यहाँ पे कुछ गेटे लगी हुई दिखाई दे रही है उसके बगल में एक दरवाज़ा लगा हुआ देखा जा सकता है।

यह कोई एटीएम लग रहा है और यह शीशे का दिखाया गया है।

यहाँ पे ओ झूली जैसे कुछ बनाये गए है जोकि स्विमिंग पूल में उतरने के लिए बनाये गए है बहोत अलग-अलग डिज़ाइन से लोग स्विमिंग पूल में उतर कर के स्नान कर सकते है।

ऊपर की तरफ में सआ लाइटे जलती हुई नज़र आ रही है इसकी दूसरी तरफ में --

दीवाल दिखाई दे रही है पीछे की तरफ में कुछ लाइटे जलती हुई नजर आ रही है सामने कुछ --

ऊपर की तरफ मे कुछ लाइट की तारे लगी हुई है अगल-बगल मे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है सामने बड़ा सा खम्भा --

और अगल-बगल में कुछ पेड़-पौधो को भी देखा जा सकता है।

कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और कुछ बच्चे बैठे हुए भी हैं

ऊपर में नीला आकाश है।

यह एक जिम की तस्वीर है।

ऊपर नीला आकाश है अंदर के तरफ में खिड़की --

अगल बगल में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है लाइट की तारे जाती हुई नजर आ रही है।

नीचे की कारपेट पे बहुत सारा वो रंग उड़ चूका है सामने कुछ स्कूटर और साइकलें खड़ी हुई देखी जा सकती है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका रंग सफ़ेद है।